java java में default constructor पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
default constructor के बारे में
और constructor को बनाना
यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए
eclipse का उपयोग करके java में class का object और class कैसे बनाएँ
यदि नहीं तो संबधित tutorials के लिए दर्शाई गयी हमारी website पर जाएँ
constructor का उपयोग instance variables को इनिशिलाइज करने के लिए किया जाता है
इसे नए object को बनाते समय कॉल किया जाता है
अब देखेंगे कि java में constructor को कैसे परिभाषित करें
अतः eclipse में मैंने पहले ही एक java file student java बना ली है
student class में हम दो variables घोषित करेंगे
अतः type करें int roll _ number semicolon और string nameसेमीकॉलन
अब एक method बनाएँ
अतः type करें void studentdetail
curly brackets में type करें system dot out dot println roll _ number
फिर system dot out dot println name
अब main method में हम इस method को कॉल करेंगे
अतः अब एक object बनाएँ और method कॉल करें
अतः type करें student object का name stu equal to new student
फिर stu dot method का name जो है studentdetail
program को सेव और run करें
हम output zero और null देखते हैं
अतः int variable का roll _ number इसकी default value zero में इनिशिलाइज होता है
और string name इसकी default value नल में इनिशिलाइज होता है
यदि हम constructor को परिभाषित नहीं करते हैं तो एक default constructor बनता है
default constructor में कोई भी parameters नहीं होते हैं
instance variables को उसकी default value में इनिशिलाइज करता है
अब constructor को परिभाषित करें
अतः type करें student parenthesis और curly brackets
याद रखें constructor में class name की तरह समान name होता है जिससे वह संबधित होता है
constructors methods के समान हैं लेकिन वहाँ कुछ महत्वपूर्ण भिन्नताएँ हैं
program को सेव और run करें
हम समान output देखते हैं
ऐसा इसलिए क्योंकि constructor जिसे हमने परिभाषित किया है वह बिना constructor होने के समान है
लेकिन यहाँ default constructor नहीं बनता है क्योंकि हमने constructor को परिभाषित किया है
अब अपने variables को values दें
अतः constructor के अंदर type करें roll _ number equal to ten semicolon
और name equal to double quotes में raman
अब program को सेव और now करें
हम output में देखते हैं कि roll number ten और name raman है
अतः constructor instance field को इनिशिलाइज करता है
अब method और constructor के बीच कुछ भिन्नता देखते हैं
constructor में return type नहीं है
जबकि method में return type है
constructor को new operator का उपयोग करके कॉल किया जाता है
जबकि method को dot operator का उपयोग करके कॉल किया जाता है
अतः यह constructor और method के बीच कुछ अंतर थे
अतः इस tutorial में हमने सीखा
default constructor के बारे में
constructor को परिभाषित करना
तथा method और constructor के बीच अंतर
स्वमूल्यांकन के लिए variables के साथ employee class बनाएँ और variables को प्रदर्शित करने के लिए method बनाएँ
और class employee के लिए constructor बनाएँ
spoken tutorial project के बारे में अधिक जानने के लिए
इस पर उपलब्ध video देखें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
spoken tutorial project team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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं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
यह भारत सरकार एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता mission द्वारा समर्थित है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
अब हम इस tutorial के अंत में आ गये हैं
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ
धन्यवाद